और इसमें आ फोर व्हीलर आता है। इसमें एक गार्डन है अच्छा से और लाइट बरा हुआ है। ए हरा हरा फूल लगा हुआ है।